आप देख सकते हैं आसमान कितना प्यारा लग रहा हैं और नीचे की ओर देखिये उधर दुरी पर कितनी प्यारी एक बिल्डिंग है जो व्हाइट कलर में नज़र आ रही है और आप देख सकते है ये किसी सिटी का नज़ारा है।

यहाँ से नीचे उतर के जाते हैं फिर दोनों साइड देख सकते है तीन पटलिया इस साईड है तीन उस साईड है जो दिखने में बहुत ही प्यारी दिख रही हैं।

दुकान के ये डेकोरेशन को देख सकते है जो देखने में बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है और व्हाइट कलर का अच्छा बड़ा-सा बेड बनवाये हुआ है इसके ऊपर वो लोग कपड़े दिखाते है खोल-खोल के।